सोप्स हैं मिठाइयाँ हैं और सामने दो बैग्स भी हैं और एक फ्रिज भी है जो कि ब्लू कलर का है।

ये एक टेबल है और टेबल पे एक ट्रे रखी हुई है।

ये केमिस्ट की शॉप है और यहाँ पे अलमारियों में दवाई पड़ी है और यहाँ पे तीन लोग और हैं --

ये एक ऑफिस है और यहाँ पे कंप्यूटर चल रहा है और वहाँ पे कुछ पेपर्स हैं एक फोन है।

औओ रअ वहाँ पे कंप्यूटर माउस है कंप्यूटर का सी_पी_यू है और कमरे में --

ये कमरा है और यहां पे बहोत सारी कुर्सियां लगी हुई है जो सफेद कलर की है।

और टेबल जो लाइट ग्रीन की है और ऊपर छत्ती हुई है और फैन है।

एक मंदिर है और यहाँ पे भगवान के सामने कुछ लोग खड़े हैं और एक बैठा हुआ है।

जैसे आलू पकौड़े हो गए जलीबियाँ हो गईं और जार्ज में नमकीन है और एक लड़का खड़ा है वहाँ पास में --

और उसने सफेद कलर की शर्ट और ब का काले बाल है उसके और साइड से यहाँ पे गैस भी है।

और सामने एक आदमी है इसने वाइट कलर की टोपी पहनी हुई है।

कलर की की गई है और इसके डोर्स का डोर का रंग आ ब्राउन कलर है और खिड़की का रंग भी ब्राउन कलर है।

यह दो आदमी बैठे हैं यह टैटू बनवा रहा है और यह कुर्सी पे बैठा हुआ है कुर्सी का रंग काला है।

ये कोई पहाड़ी लग रही है और एक आदमी के पास अअअ चाय का कप है और उस पे नेस्कैफे लिखा हुआ है।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

बैठे हुए हैं और एक सर खड़ा है उसने पीले कलर की शर्ट और ग्रे कलर का पैंट पहना हुआ है।

उनके शूज का कलर ब्लैक है और उनके बालों का कलर भी ब्लैक है।

और इसके किनारे पे कोई मिट्टी जैसा है और--

और उज़ उसके राइट साइड से एक मरून कलर का गेट है जिसमें वाइट कलर भी भरा हुआ है।

ये एक रास्ता है और यहां पर दो कार्ज है एक व्हाइट है और एक ब्लैक है और दो मकान हैं।

ये कमरा है और यहाँ पर अ एक सोफा रखा हुआ है उसमें पिंक कलर है और वो उसके ऊपर --

ये गाड़ी है और ये एक सड़क पर जा रही है और कुछ लोग खड़े हैं वो कुछ खरीद रहे हैं।

ये एक शॉप है और यहाँ पे फेविकोल ऐसे ही कोई कोई चीज़ खरीदते हैं और दुकान में --

कोई चीज रखी हुई है और अ वहां पे--

ये गाड़ी हैं और ये ब्लैक कलर की गाड़ी है ऊपर ला लाइट इसपे वाइट कलर की लगी हुई है।

ये एक समंदर है और इसमेंएए समंदरी जहाज है और एक छोटा बोट है।

ओय इस समंदरी जहाज़ को उस बोट से बांधा गया है और पानी का रंग काला दिख रहा है।

औऔर समंदरी जहाज में ऊपर वाले हिस्से में खिड़की पे क्ट्लस हैं।

लाइट येलो की जैकेट और ब्लैक कलर की जैकेट पहनी हुई है इसके बालों का रंग ब्लैक है।

और नीचे भी कुछ कपड़े हैं जो पिंक ग्रीन और ब्लैक है।

एक सिलाई सेंटर है और यहाँ पर मशीन ज़ का बी बनाने के रखे हुए है।

ये एक मैदान है और सामने एक ब बिल्डिंग है एक हट जैसा है और इसमें --

इलेक्ट्रिक पोल्स है और कुछ ब ट्रीज नजर आ रही है और सब्ज गास है।

सात किस्मों की मिठाई हैं और यहां पर रेड कलर का टूल भी दिख रहा है।

यह सड़क है और यहाँ पर लोगों का रश है एक ऑटो है एक अ बड़ी गाड़ी है।

दो शॉप्स है दूर घर वहाँ पर दिख रहे हैं लोग यहाँ पर अ चलते नज़र आ रहे हैं।

और एक लड़के ने वोआईट कलर की इनर पहनी हुई है।

ये टेलर ज़ रूम है र यहाँ पर ये कपड़े सी रहे हैं तीन आदमी है।

एक नैएएए अअअ अपने गले में फीता लगाया हुआ है और दो काम कर रहे हैं।